उसको एक आदमी रिपेयर कर रहा है।

नदी बीचो बीच पहाड़ में दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में ग्रीन वाला पेड़ दिखाई दे रहा है।

नदी चश्मा शेप में दिखाई दे रहा है।

उसको भी घेरा हुआ है लोहा वाला वॉल से।

ये एक स्ट्रीट दुकान है।

उसका सामने में ब्रिजल कलर का चेयर दिखाई दे रहा है।

उसका पीछे में बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पिलर्स पूरा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

वॉल भी व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है।

येलो टी शर्ट पहनके एक ग्रुप दिखाई दे रहा है।

साइड में ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ मे एक हॉल दिखाई दे रहा है।

टेबल का नीचे में चेयर दिखाई दे रहा है।

पत्थर दोनों के बीच में स्टेप्स होते हुए दिखाई दे रहा है।

दोनों कोने कोने में पेड़ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

रोकटो का अंदर में मेरी स्टैचू डिखाई दे रहा है।

टेबल का ऊपर में पानी बोतल दिखाई दे रहा है।

चमकता हुआ लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

साइड में स्पीकर भी दिखाई दे रहा है।

साइड साइड में ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा के दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर का छत वाला घर भी दिखाई दे रहा है।

बच्चा भेजने वाला छोटा घर जो रेड कलर का डिखाई दे रहा है ऊपर वाला रूफ ।

अलग वाला ग्रीन कलर का रुफ दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड में गाड़ी पार्किंग करके दिखाई दे रहा है।

रोड में दो लरकी छतरी पकर के भी दिखाई दे रहा है।

एडमिशन राइस वाला भी दिखाई दे रहा है।

बाहर में दो गाड़ी पार्किंग करके दिखाई दे रहा है।

अंदर पूरा फ्रंट साइड ग्लास से कवर करके दिखाई दे रहा है।

पानी में चिपते हुए दिखाई दे रहा है।

यह एक ब्रिज का नीचे वाला पानी दिखाई दे रहा है।

जाली का अंदर में एक जानवर दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक फुटबॉल ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ब्लैक एंड वाइट का गोल पोस्ट दिखाई दे रहा है।

एडीडेस लिखने वाला कपड़ा पहन के दिखाई दे रहा है।

हंड्रेड ग्राम का दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक हॉल दिखाई दे रहा है।

घर का अंदर टाइल्स से फ्लोरिंग करके दिखाई दे रहा है।

पिलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे एक लेडिस आ के दिखाई दे रहा है।